नीचे गाड़ियां चल रही है लोग इधर उधर चल रहे हैं और अपना समय इसी में बर्बाद कर--

और यहां पर इनको अंदर कुछ--

उसके चेहरे पर ब्लर नजर आ रहा है और पीछे यहां पर बहोत सारी शॉप में मिठाइयां हर प्रकार के भोजनयाल की व्यवस्था की गई है।